इसे लाल पीला गुलाबी नीला और उजला--

यहां पर बहुत सारे टेबल भी लगे दिख रहे हैं जिनका रंग नीरा है।

और उस पर चार-पांच गमले भी रखे दिख रहे हैं जिन पर अलग-अलग डिजाइन किया दिख रहा है।

और उसके ऊपर दो खिड़कियां भी दिखाई दे रही है जिसमें शीशा लगा हुआ--

यहां पर लाल और काले रंग के बहुत सारे कुर्सियां भी लगी हुई दिख रही है।

एक बस के स्टैंड का दृश्य है जहां पर दो तीन बसें लगी दिख रहे हैं जिनका रंग उजला है। ।

यहां के बिल्डिंग के ऊपर भी एक लाल रंग का बोर्ड लगा दिख रहा है।

इसपर वी_आर_आर प्राईड भी लिखा हुआ--

यहां पर बहुत सारे पौधे भी लगे दिख रहे हैं।

जिसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है और नीचे एक पेंट भी पहनी हुई है।

और यहां पर एक व्यक्ति ने अपने हाथों में एक मोबाइल लिया हुआ है।

यहां पीछे एक टेंट भी लगा दिख रहा है जिसका रंग उजला है।

और यहां पानी भी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

जो एक टेंट के अंदर है यहां एक व्यक्ति पाइप लेकर पानी भी देता दिख रहा है।

जिसने नारंगी रंग का शर्ट भी पहना हुआ है और नीचे एक पैंट भी पहना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे बैलून भी लगे दिख रहे हैं जिनका रंग उजला और नीला है।

यह एक माइनिंग फैक्ट्री का दृश्य है जहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और उसने एक चश्मा भी पहना हुआ है ।